एक गेट दिखाई दे रहा है एक स्टील का अह एक पाइप जैसा लग हुआ दिखाई दे रहा है जंगल में कुछ।

फोटो के फेस को भी हाइड कर दिया गया है और सामने में एक चेयर लगा हुआ है उस पे चाद चादर दी हुई है जो कि रेड और व्हाइट कलर में--

घर बंता हुआ दिखाइ दे रहा है जहाँ पर ये वर्कर काम करते हुए मिस्त्री दिखाइ दे रहे एक मिस्त्री--

फ्लैट की रोशनी आती हुई दिखाई दे रहीं हैं जो की सामने में पार्क भीं हैं।